मुझे यहाँ पर एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर बहोत सारी कुर्सियां दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर टेबिल दिखाई दे रही है मुझे यहां पर पंखा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है।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

मुझे यहां पर चारों ओर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह झरना चट्टानो की बीच से निकला हुआ है।

इस बैंक का नाम यूनियन बैंक आफ इंडिया है।

मुझे यहां पर दो बक्से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहां पर एक ए_सी दिखाई दे रही है।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

मुझे यहां पर तीन काउंटर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक निशुल्क स्वास्थ्य सिविर लगा हुआ है।

यहाँ पर मुझे एक पंडित दिखाई दे रहा है यहां पर मुझे बहुत सारे या --

क्यहां पर मुझे एक किराने की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ पर मुझे सेनेटरी पैड दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे मैहरून कलर की स्कूटर दिखाई दे रही है।

ऊपर मार्केट के बाहर बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पर मुझे बहोत सारी जनता दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे टायर दिखाई दे रहें हैं।

यहां पर मुझे एक खेत दिखाई दे रहा है।

यह दुकान फूलों से और गुब्बारों से सजी हुई है।